काफी सारे ठेले खड़े हुए हैं। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने यह --

जो कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनके हाथ में सीट कैंची है। रंग-बिरंगे --

लाइट लगी हुई है रेड कलर की। कांच दिखाई दे रहा है कार में।

खेत के पास पीछे एक पहाड़ी टाइप का एरिया है जिसे काफी हरियाली दिखाई दे रही है|

और ये बैनर लगा हुआ है जो स्टेट बैंक का है। शॉप के बाहर एक बाइक खड़ी हुई है।

मंदिर के बाहर दो लेडिसे दिखाई दे रही कुछ बच्चे हैं गेट के बाहर घंटी लगी हुई है।